पेड़-पौधा दिख रही है आपलोग को हरियाली पूरा --

हाय गाइज आपलोग देख सकते है यहाँ बहुत ही अच्छा एक बड़ा -सा ग्राउंड है इसमें फुटबॉल का मैच होने वाला हैं।

और यहाँ बहुत ही साफ-सफाई मंदिल है आपलोग आएगे तो बहुत अच्छा लगेगा।

आप लोग देख सकते हैं कि यहां ऊपर तार खींची हुई है रेल का पटरी है।